फूलों कि डिजाइन दिए है यह पर एक बच्ची भी है और यंहा पे आजू -बाजू बहुत सारे गमले भी रखे हुए है रंग बिरंगे फूलों वाले यहाँ पर एक गमला भी है एक पूरा व्हाइट कलर से पेंट हुआ है।

ये एक चर्च जो पूरा लाइटों से डेकोरेट है और यहाँ पर बहुत सारे स्टार भी नज़र आ रहे हैं जो पूरे लाइटों से डेकोरेट है। बाहर ब्लैक कलर की गेट भी नज़र आ रहे हैं। यहाँ एक पेड़ पौ एक पेड़ भी नज़र आ रहे हैं। यहाँ पर एक आंटी नज़र आ रही हैं।

ऑर उसके आजू -बाजू बहुत सारे पेंटिंग्स भी नजर आ रहे है यहा पर कुछ पेड़ यहाँ पर कुछ फूल भी नजर आ रहे है यहा पर एक दान पेटी भी नजर आ रही है।

बहुत बड़ा घर है जहाँ पर दो लोग अ बाहर खड़े हुए है कुछ पढ़ रहे है एक-एक अंकल अंदर खड़े होके कुछ पढ़ रहे है और ये इसके गेट ब्लैक कलर के है ब्लैक और गोल्डन और यहाँ पर पेड़-पौधे भी नजर आ रहे है।

ये एक कार मैकेनिक कि शॉप जहाँ पे बहुत-बहुत सारे कारे नजर आ रहे है।

है। ब्लू कलर का बोट है। यहाँ प एक पेड़ एक अः यहाँ प एक पाइप भी नजर आ रहा है। यहाँ प एक पेड़ा भी नजर आ रहा है। एक टॉवर भी नजर आ रहा है। ये पूरा व्हाइट व्हाइट कलर का पेंट हुआ है और --

चर्च है जो सजा हुआ हैस्टारों से। यहाँ के पर्दे ब्राउन कलर के हैं। यहाँ पर एक पेटी भी नजर आ रही जिसका कलर येलो है। यहां पर एक चेयर नजर आ रही है जिसका कलर व्हाइट है ये और --

वहां बह वहाँ बहोत सारे पेड़ और पौधे भी नजर आने हैंकुछ घर भी हैं और यहाँ पर पॉट भी है।

ये एक फूलों और टेडी बिअर की दुकान हैं। यहाँ रेड कलर के रोस बाहर लगे हुए है रखे हुए है यहाँ पर येलो कलर का टेडी बिअर रखा हुआ है।